गाछ के ऊपर आसमान भी दिख रहा है।

यह जैसा बनाया गया है मगर अभी कोई जानवर नहीं दिख रहा है। चारो तरफ हरियाली नज़र आ रही है।